ये भगवान के जा रहा है जिसमे अंदर होकर भगवान बैठे हुए भगवान को बहुत सजावट किया गया बाहर में फूलों से--

फूल बनाया गया है की यह प्लास्टिक के एंड बहुत सारा जो है बजा रहा है पैर मुंह में से--

ठेला है एक आदमी का एक आदमी का कंधा में गमछा बिछा है साइड में लेफ्ट साइड में --

एंड बहुत बड़े - बड़े तार का कांच है एंड बे नारी लगाउ छे।

ऐनङ स्लाइडर बना हुआ है दो स्लाइडर बना हुआ है जिसमें से ब्लू व्हाइट सिलेंडर --

लेपट साईड की और आगे की और बहुत सारे बाइक लगी हुए हैं बहुत सारी खिड़कियां है इसमें--

इसमें पीछे की और एक मोबाइल रखा हुआ आ आ आगे की और एक--

ये एक मस्जिद है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं।

बड़े-बड़े पत्थर है औ इन पत्थरों के बीच से ऊपर के साइड से--

एक कटोरा में आगे की ओर गिलास है एंड राइट साइड में बहुत सारे टेबलेट्स कुर्सियां है जो यल्लो रंग का टेबल है।

सॉक्स पहना हुआ है दो मोजा पहना हुआ है दोनों पैरों में--

दो आदमी का तस्वीर बना हुआ है वह बोहोत --

ये एक रोड है पार्क करो बहुत सारा पार्क है बहुत सारे गज ब्रिज है पानी का नदी है।

एंड पोल्ल है लाइट का पोल्ल है एंड करंट का तार है लाइट चल रहा है पे--

बगल में बहुत सारे बैठ रखे हुए हैं दो पंखा है।

ये एक सुकमा का कृषनि विज्ञान केंद्र है।

एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसमें ग्रिल का दरवाजा लगा है एक पेड़ पीछे की ओर छज्जा से घेरा गया हैं।

एंड रेड है ये जिसमें से आगे ऊपर के पास स्टार बना है सामने के गेट के पास --

बैलून से सजाया गया है

एण्ड बहुत सारा पानी हैं आगे की ओर सियारा--

एंड वो सामने की ओर तीन जो बच्चा है उसका मुंह में कुछ लगा हुआ है रेड कलर के एम सीडी है।

जो बंद है एक लेफ्ट साइड में खिड़की जो खुला हुआ है एंड सामने ग्रिल का दरवाजा है लोहा का --

एने येलो कलर के एक आदमी टी -शर्ट पहना हुआ है और राइट साइड की ओर --

एक सीधी रोड है अगल-बगल कांच ब्रिज है राईट साईड मे घर है जो टीना का है।

ब्लू रंग का टीना का हैं एण्ड घेरा कीये लोहा का--

खा से हरे हरे कैक्टस है जिसमें काटेदार पता निकला रहता है केक्टस में--

मुजफ्फरपुर डेरी एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है एक आदमी जा रहा है लेफ्ट साइड किया रोड से--